इसमें एक आदमी चल रहा है।

कमरे में सीधा सर खड़े रहे है और क्लास बोल रहे है।

हरे हरे झाड़ा दिख रहे हैं।

दीवाल पर ग्रीन कलर दिख रहा है और इस जगह पूजा चल रहा है एक आदमी खड़ा रहा है और दो आदमी बैठकर है।

एक कार आती है एक कार ठहर रहा है।

बहुत सारे लाइट्स फड़क रहे है।

बहुत सारे पोस्टर दिख रहे हैं।

लाल ईंट की दीवाल दिख रही है।

हरे हरे बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

सामने झाड़ को पत्ते नहीं है।

इस बालिका नृत्य करती है।

कम्युनिटी हॉल दिख रहा है।

एक आदमी ब्लू शर्ट डालके खड़ा रहा है।

बहुत सारे लोग खड़े रहे हैं बैठ रहे हैं।

बिल्डिंग के आसपास झाड़ झाड़ पेड़ पौधों दिख रहे हैं।

इस पिक्चर देखने से एक ब्रिज वायर दिखता है।

ग्रीन कलर से पानी बहता है।

दो फैंस दिख रहे हैं।

इस कमरे में बहोत सारे टेबल सिक रहे हैं उसमें खिताबां है।

ब्लैक कलर के विंडो मिरर से भरे हुए हैं उसके अंदर साइकिल सीखते है।

इस पिक्चर देखने से कपड़े के शॉप लगता है ऊपर टॉप में सी_सी कैमरा और थोड़े लाइट्स दिख रहे हैं।

इस कमरा एक व्यायाम शाला दिख रहा है।

सब लोग बाईबिल पकड़ कर प्राधन करते हैं।

व्हाइट कलर से भर रहा है।

और सामने बुद्ध विग्रह सुंदर लगता है।

और थोड़े लोग बैठ रहे हैं।

इस पिक्चर में फंक्शन चल रहा है।

बहुत सारे व्हाइट चेयर्स ऑरेंज चेयर्स दिख रहे हैं उसमें लोग बैठ रहे हैं।

इस पिक्चर में दुकान दिख रहा है।

डिजिटल लाइट से पोस्टर लगाके--

इसमें बच्चे खेल रहे हैं।

ग्रीन कलर का कारपेट डाल के है।

एक ब्लू कलर बैलून दिख रहा है।

ऊपर ऐ_सी दिख रहा है।

और एक टेबल फैन दिख रहा है।

बच्चे के सामने स्विमिंग पूल दिख रहा है।

हरे पेड़ पौधा दिख रहे है।

अलमारी के पीछे विंडो दिख रहा है।

उस आदमी व्हाइट शर्ट डाल के है।

रिजर्वायर का पानी हरा दिख रहा है।

बहुत सारे ट्रेस दिख रहे हैं।

इसका टॉप येलो कलर दिख रहा है।